अपनी बुक लेकर बेंच पर दिखाई दे रहे हैं कलर्स दिखाई दे रहे हैं कंपास दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे लिख रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कुछ बातें कर रहे हैं।

ग्रीन कलर के फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं ऑटो खड़ा हुआ है।

बोट लगा हुआ --

खम्बा गड़ा हुआ है जेंट्स दिखाई दे रहा है माल बनाने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

एक दुकान दिखाई दे रहे हैं जिस दुकान में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

डेयरी मिल्क दिखाई दे रही है ये फ्रिज खाली रखा हुआ है ऊपर रखे हैं प्लेट वगैरह खाने वाली --

दिखाई दे रहा है कॉलेज बना हुआ है राष्ट्रीय --

जेंट्स लेडीजे दिखाई दे रहे हैं कालीन बिछी हुई है जमीन पर झंझरियाँ दिखाई दे रही है ।

गाड़ियाँ खड़ी है बहुत सारी दिखाई दे रहा है एक पर्दा दिखाई दे रहा है।

कलर की झंडा दिखाई दे रहा हे --

पीले-पीले टाइप का पोता हुआ है।